वहां पर एक कोठा भी बना हुआ है और इस फोटो में चारपाई भी दिखाई दे रही है।

मकान के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके सामने एक साइकल भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में घर के अंदर एक झूला लटका हुआ है।

जिसमें से कुछ पेड़ों पर धूप भी लग रही है।

यहां पर पीछे की और कुछ छोटे छोटे और भी पौधे नजर आ रहे हैं।

हां पर एक पूल भी नजर आ रहा है जो की पानी को नहर को पार करने के लिए बनाया गया है।

यह किसी मूर्ति का फोटो है जिसमें बोध की मूर्ति नजर आ रही है।

पीछे एक गमला भी नजर आ रहा है।

पीछे दीवार पर भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ सामान सोने की व चांदी की चीजें रखी हुई हैं जो की शीशे में दिखाई दे रही--

इस फोटो में एक रोड नजर आ रहा है जिसके दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें से भिंडी भी है गाजर मूली--

पर करेले भी रखे हुए और पीछे एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

और गेट पर कुछ फूलों से सजाया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर नीचे की ओर एक गेट नजर आया जिस जोकि शीशे का बना हुआ--

दो मेज भी नजर आ रही है जिसमें दोनो का कलर अलग अलग है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे--

यहां पर जिस दुकान के है सामने खड़े है उसका नाम आरती बुक सेंटर है।

यहां पर पीछे बहुत सारी बुके नजर आ रही हैं।

जो कि किसी बॉक्स में बंद कर रखे हैं यह तीन लेयर में बॉक्स बने हुए हैं।

उसके सामने बहोत सारे व्यक्ती बैठे हुए हैं बच्चे जो उसकी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे है।

इस फोटो में सामने की ओर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

जिसके सामने एक व्यक्ति स्कूटी पर बैठा हुआ है।

कुछ सामान रखा हुआ है तीनों लेयर में और उसके साइड में एक व्हाइट कलर का बोर्ड भी है।

इसमें से कुछ पेड़ पौधे सूखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके ऊपर एक बोड लगा है डी_न ऑटोमोबाइल्स का--

इस फोटो में बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे--